यह तस्वीर किसी मार्केट का है जहां पे बहुत सारी सब्जियां--

सब्जियों में बैंगन बंदा गोभी गाजर आलू--

यहां पे गिटार बैग --

एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है।

एक व्यक्ति जो नीचे बैठा हुआ है पीले रंग का टी-शर्ट पहना है।

डेकोरेट किया हुआ है।

जिसका नाम एच_पी है।

एक ऑटो में कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं।

और उस ऑटो के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है।

और एक बुजुर्ग आदमी नीचे बैठा हुआ है।

बहुत सी गाड़ियां भी लगी हुई है।

और बाइक लगी हुई है।

ये तस्वीर एक फील्ड का है।

खेल रहे हैंऔर इस फील्ड में बहुत से हरे भरे पेर है।

जो दिखने में काफी प्यारा लग रहा है।

बहुत ही सुंदर लीची दिख रही है।

बिल्कुल लाल लाल है।

हरे-हरे हैंजो दिखने में काफी--

काफी बड़ा सा हॉल है।

और जहां पे लाइट भी जल रही है--

जहां पे बहुत साफ-सफाई है।

जहां पे अभी बहुत डेकोरेशन किया हुआ है।

वहां पे बहुत से लोग--

खड़े हैं जो कि टोपी लगाए हुए हैं।

यह तस्वीर किसी फील्ड का है।

और एक व्यक्ति है जो ढोलक बजा रहा है।

एक महिला है जिनके हाथ में वीना है और वह वीना बजा रही हैं।

जिसके ऊपर एक व्यक्ति--

बहुत सारा डेकोरेशन किया हुआ है।

जहां पे दो बच्चों ने पीली टी-शर्ट--

और उसके पास एक व्यक्ति भी--

बिहार उद्योग वि उम्म विभाग बिहार सरकार के --

और कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

यह तस्वीर किसी मैरिज हॉल का है।

जिसकी डेकोरेशन काफी शानदार की हुई है।

और ये दिखने में बिल्कुल--

इसकी डेकोरेशन फ्लावर से की हुई--

जहां पे फ्रेश ग्रीन घास दिख रहे हैं।

टेबल भी लगा हुआ है।

और जिन्होंने रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए है।

और ब्लैक पेंट पहना है।

जो क्रीम कलर का है इसके बाहर आगे की ओर एक बड़ा सा टेस्ट फर्मा है।

ये तस्वीर किसी जर्सी फिटनेस क्लब के बाहर का है।

ये तस्वीर एक फील्ड का है।

किसी गार्डन के साइड का है।

जहां पे बहुत से ग्रीन - ग्रीन पेड़ नजर आ रहे हैं।

की गई है जहां पे लोग आते-जाते बैठ के आराम कर सकते हैं।

पढ़ाया जा रहा है और सामने एक टीचर भी--

पानी की ओर मुंह करके--

चलाने के काम आते हैं।

ब्लू कलर की है तो किसी की मैट --

डेनिम सालोन क--

और एक गार्ड बैठा हुआ है।

और ब्लू जींस पहने हुए हैं।

ये तस्वीर किसी स्टेशनरी --

पेंसिल रबर कटर --

डैम के नीचे का है।

फाउंटेन शो चल रहा है ।

और उससे पानी भी निकल रहा है।

जो दिखने में काफी सुंदर लग रहा है।

किसी केक हाउस का है।

सामने एक फ्रिज भी नजर आ रहा है।

जिस पे वाइट कलर की कवर ऊपर में है।

ये तस्वीर किसी--

इसमें एक ग्रिल लगा है जो लाल रंग का है।

चीजें रखी हुई हैं।

सामने बैठा नज़र आ रहा है।

ये तस्वीर किसी।

गेम की भी व्यवस्था है।

जहां बाइक पर--

एक व्यक्ति बैठा है।

ये तस्वीर किसी--

जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति।

किसी पार्क का है।

उसे इकट्ठे कर रहे हैं।